दिखाई दे रहा है। बस मे लाल रंग का सीटे दिखाई दे रही है। सफ़ेद कलर की लम्बी बस दिखाई दे रही है।

इस तस्वीर में मुझे एक बहोत बड़ी इमारत दिखाई दे रही है। अं इमारत में दो रंग दिखाई दे रहे। एक स्किन कलर है और एक गोल्डन ।

ई इमेज में हमको दो बालक दिखाई दे रहे हैं। पहाड़ी के अंदर दिखाई दे रहे हैं। एक बालक जाता हुआ दिखाई दे रहा है। आज --

लाल रंग की है और एक पीले रंग की है जोकि बहोत सुन्दर लग रही है।

इस इमेज में मुझे चट्टान दिख रही है। चट्टान उम्म छोटे मो छोटे-बड़े पत्थरों से मिलकर बनी है। चट्टान --

क्रीम कलर की दिखाई दे रही है। चट्टान के पास एक और चट्टान दिखाई दे रही है।

गेट खुला हुआ दिख रहा है जहां पे गेट पे एक्सिस्ट लिखा हुआ है। अलग-अलग दवाइयां दिख रही हैं।

इस इमेज में एक मंदिर दिखाई दे रहा है। मंदिर के आजू-बाजू में जियो लाइफ जियो डिजिटल लाइफ और एयरटेल फोरजी का --

इस इमेज में मुझे एक व्हाइट कलर का सुंदर -सा विशाल मंदिर दिखाई दे रहा है जिसका गेट --

दिखाई दे रहे है जोकि दरगाह के पैर पड़ते हुए दिखाई दे रहे है। एक पंखा दिखाई दे रहा है। हरा रंग की घड़ी दिखाई दे रही है।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

ला हरे रंग लला रंग की चेयर दिखाई दे रही है एक गेट दिखाई दे रहा है जोकि बहुत बड़ा है।

कुछ तस्वीरे में जो एक महिला दिख रही है। नीचे चर्च दिख रहा है। इशू मशीह की ये तस्वीर दिख रही है। जिसमे इशू मशीह जी खड़े हैं।

ईमारत कांच से बनी हुई दिखाई दे रही है। ईमारत में बोहोत बिल्डिंग्स दिखाई दे रही हैं।

इस तस्वीर में मुझे एक जीम दिखाई दे रहा है। जिम में मशीने दिखाई दे रही है। शटर बंद है जिम की।